बहुत ही अच्छा खुला आसमान दिखाई दे रहा है आगे बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

पौधा है बहुत ही घने दिखाई दे रहा है खेती किया गया है।

पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ भूरा कलर का है साथ में मटका दिखाई दे रहा है ऊपर छत दिखाई दे रहा है नीचे लकड़ियाँ से घिरी दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ बहुत सारे केला सेव संतरा पपीता और यहाँ पे कटोरा दिखाई दे रहा है।

नीचे चार खिड़कियां है और बुक माई शो लिखा हुआ है मेट्रो सिनेमा भी लिखा हुआ हैं ।

और यहाँ अकेला मकान दिखाई दे रहा है मकान के नीचे कुछ पोस्टर लगा हुआ है।

यह एक चिकित्सालय है ऊपर में एक आपातकालीन चिकित्सीय राजा देव सरन जिला चिकित्सालय लिखा हुआ है।

पांच लाईट लगा हुआ है और गमला है गमले में पौधे है।